और बहुत सारे पेड़ है और वहाँ पे बिजली के खम्भे है। एक बच्ची साइकिल रिंग करके जा रहे है।

यह एक शेर है और यह बहुत अच्छे पालतू शेर है और सभी से मजाक ये करते हैं और --

और रीयलमी की भी फ़ोन मिलती है। और आई फ़ोन मिलते है । बहुत सारे मिलते है ।